यहां पर तीन लोग हैं एक गड्ढा है गड्ढे में ईट पड़ी हुई है ऊपर से तार लगा हुआ है मकान बना हुआ है।